इसमें अलग अलग रैंक बनाकर उसमें किताबें रखी हुई है।

का लोगो लगा हुआ है इधर एक स्कूटी पर एक महिला व लड़की बैठी हुई है एक यहां पर बाइक पर व्यक्ति बैठा हुआ है।

दिखाई दे रहा है और इसके फर्श में--

दो टूल रखी हुई है और कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं।

इसमें दीवारें सफेद हैं और उसमें--

यहां पर एक साड़ी की दुकान बनी हुई है जिस पर विजय साड़ी सेंटर एवं कमला सा साड़ी सेंटर बोर्ड लगा हुआ है।

और उसके पास में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और यहां पर एक लेडिज बैठा हुआ है।